काफी बड़े लाइट्स है छोटा लाइट्स है

थ्री फ्लोर्स हाउस है साइड ग्लासेस है डेकोरेशन है।

पानी आता है नीचे आता है ऊपर से आता है जाता है।

दो टाइप के मैइदान है मैइदान के छोटा है।

शॉप पे एक आदमी चेयर के ऊपर बैठे को क्या वे काम करता है।

गार्डस है आदमी है है एको बड़े कोंडा के पीक्स ह --

अ हिन्दी में नाम्स है डेकोरेशन आच्छा हैं।